यहाँ पर गमले हर कलर के गमले रखे हुए है जिसपे आप देख रहे है की बहुत ज़्यादा फुले र--

यहाँ एक मैदान है जिसपे घास लगी हुई है और चार-पाँच चेयर ब्लैक कलर की रखी है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है।